सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है जिसके।

सामने काउंटर लगे हुए हैं जिन पर खाना मिल रहा है।

पर एक बड़ा सा लाइट का ट्री खड़ा हुआ है।

रोड पर जाती हुई एक कार भी दिख रही है और एक मैजिक दिख रही है।

नीचे बैठे हुए कुछ आदमी और औरतें दिखाई दे रही हैं।

सामने खड़े हुए कुछ आदमी दिख रहे हैं जिनके पीछे एक बे बेल दिख रही--

और एक सामने दुकान दिख रही है जो टो जो ऑटोमोबाइल लिखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक रूम दिखाया गया है।

इसमें एक बड़ी सी व्हाइट स्क्रीन लगी हुई है।

दोनों तरफ दो मेज और पड़ी हुई है जिनके ऊपर एक गमला रखा हुआ है।

सामने कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं।

और सामने एक रोड दिख रही है जिस पर टाइलें बिछी हुई हैं।

पीसने की मशीन के बाट रखे हुए हैं और आटा पीसने की मशीन रखी हुई है।

नीचे एक बोर्ड और लगा है जिस पर चौधरी--

और एक रोड दिख रही है जिस पर कुछ सवारी आती जाती दिखाई दे रही हैं।

और एक इस्कूटी सवार पर दो लड़के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस बोर्ड पर रामवीर सिंह गौरव कुमार आदि दिख रहे हैं।

जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है।

इस फोटो में सामने एक लाइब्रेरी दिख रही है।

रेड कलर का है इस पर कुछ डिजाइन बने हुए हैं।

और सबके सिर पर टोपी लगी हुई है।

इस फोटो में सामने एक क्लास रूम दिखाया गया है।

जिसपर एक बॉडी बिल्डिंग का चित्र बना हुआ है।

मस्जिद के पास में कुछ रोड दिख रही हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा बस स्टैंड दिख रहा है।

और एक नब्ज चलने वाला कंप्यूटर रखा हुआ है।

इस फोटो में सामने रोड पर तीन बाईके के खड़ी हुई है।

सामने कॉस्मेटिक की दुकान पर कुछ सामान रखा हुआ है जो शीशे में दिख रहा है।

इस ग्राउंड में एक बड़ा सा लाइट और जल रहा है।

रखी हुई है जो की लोहे की है।

और एक औरत के पीछे एक बाल्टी रखी हुई है एक दरवाजा दिख रहा है।

और एक लड़की जिसने घाघरा पहना है वह खड़ी हुई है और नीचे कुछ औरतें बैठी हुई।

इसमें अलग अलग तरीके की कुर्सी रखी हुई है।

ऊपर कुछ लाइटें जलती हुई दिख रही है।

और लकड़ी की बनी हुई है ऊपर कुछ बड़े बड़े सिरहाने बने हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक मेज पड़ी हुई है।